एक गुरुनानक पब्लिक --

है। इसका डिजाइन बहोत--

हॉस्पिटल है यहां पर --

तो जैसा कि आप--

तो जैसा कि आप--

ट्रैवलर कार है जिसमें बहुत सारे लोग--

तो जैसा कि आप दे--

कि यहां पर बहुत सारे मोबाइल्स मिलते हैं।

तो जैसा की आप--

और इसके आगे एक न्यू साइकल रखी गई है जो--